साथ ही सामने कुछ मकान नजर आ रहे हैं और बहोत से बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे--

दीवार पर भी छेद करते नजर आ रहे हैं।

साथ ही नीचे रंग-बिरंगे गमले दिखाई दे रहे है।

एक महिला सामने दिखाई दे रही है और बहोत से छोटे पौधे भी दिखाई दे--

जिसके ऊपर पधारो सा राजधानी थाली लिखा हुआ है।

बड़े से गुरुद्वारे को देख पा रहे हैं।

जिसका रंग नीला है साथ ही पीछे रैक बनी हुई है जिस पर बहोत से कपड़े--

यहां हम सामने एक बड़े से दुकान को देख रहे हैं।

जिस पर सामने रैक बना हुआ है।

सामने दो बड़े बस भी दिखाई दे रहे हैं जिसका रंग नीला और एक का रंग लाल है।

बाहर बहोत से साड़ियां कुछ कम्बल और कुछ कपड़े बाहर टंगे दिखाई दे रहे है।

और एक काले रंग की बाइक भी बाहर पार्क दिखाई दे री--

बहुत ही सुंदर काउच लगे हुए हैं।

कुछ बिल्डिंगे सामने नजर आ रहीं हैं

साथ ही वजन करने के लिए यहां वजन मशीन भी दिखाई दे रही है।

एक बड़ी सी खिड़की भी दिखाई दे रही हैं और एक ए_सी भी रखी हैं।